यहाँ पर हमे एक जनरल स्टोर की दुकान रखी हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर फुटबॉल वगैरा रखे हुए हैं चिड़िया बन्दा भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर एक सायिन बोर्ड लगा हुआ है जिस--

जहां पर स्कूटरो की रिपेयर होती होगी जो की स्कूटरो की सर्वित सर्विस होती हैं वहां पर कुछ लाइटें लगी हुई है पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

बहोत बड़े-बड़े पेड़े भी दिखाई दे रहे है और बिजली वाला एक खंबा भी लगा हुआ है और बिजली वाले बहोत सारे तार भी लगे हुए है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और हमे एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस मकान की दीवारे दिखाई दे रही है और उस मकान पर सफेद कलर का पेंट किया हुआ है और ज उस मकान की खिड़किया भी दिखाई दे रही है जो खिड़किया बंद है और एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उस पर दीवार पर महर्षि यूनिवर्सिटी आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रशासन भा --

--और वहा पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है और कुछ औरते भी है और कुछ गाड़िया भी रखी हुई दिखाई दे रही है और जमीन में कुछ गड्ढे खुदे हुए है जहाँ पर बहुत सुन्दर पुष्प लग--

यहाँ पर हमें बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है जोकि बहुत ही सुन्दर दिखने में लग रही है वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ।

गोभी रखी हुई है टमाटर सलगम मूली प्याज और मटर भी रखी हुई दिखाई दे रही है और लाल कलर की सलगम भी रखी हुई है और एक लकड़ी वहाँ पर दिखाई दे रही है।